इधर रस्ता है। एक में बहोत सारा स्टिकर लगाना हुआ है।

इधर पे गेट है अ दोनों छोटे-छोटे घर है। ईधर पे रास्ते में मट्टी का रस्ते है।

ये एक मंदिर का रास्ता है जिधर कुछ बहुत सारा पेड़ है और इधर भी दिखाई दे रही है। एक मूर्ति भी है।

एक रस्ता है जहा पे इधर बहोत सारे घर भी हैं और इधर पे दिखाई दे रही है बहोत सारा पेड़ है।

और इधर पे ए बहोत सारी पेर है जोकि न बोहोत खूबसूरत है। इधर पे एक घर भी है जोकि खूब है।

एक पहाड़ी इलाका हैजो कि न इधर पर बहुत सारे पेड़ है। और उधर भी पहाड़ भी है। इधर पे छोटा-छोटा कितना सारा घर है।

और इधर भी बहोत सारा पहाड़ है।

एक बहुत बड़ा रास्ता है जहा पे इसके साइट पे है। कुछ गाँछ पेर वगैरह इधर है इधर एक बहुत बड़ा गेट है।

और इधर पे दोनों इंसान आ रहा है इधर पे चेयार भी है और इधर पर बहुत सारा कुछ --